पड़ोसी की पैरेड चल रही है इस फील्ड में।

हो सकता है यहाँ कोई शादी हो रही है उसी की प्रेपरैशन चल रही है।

लगता है कोई ईवेंट होने वाला है उसी का स्टेज सजाया गया है।

जिसे काफी टाइम से यूज नहीं किया गया --

लगता है ये किसी वेकेसन पर आये हैं छुट्टिया मनाने के लिए।

बाल कटवाने या बाल सेट करवाने आया है ये लड़का।

ये दोनों दोस्त या भाई या कोई रिश्तेदार हो सकते है।

जहां पर डेली यूज का समान डेली यूज का समान मिलता है।

ये प्लेटफ़ॉर्म नंबर टू है और --

किसी बस या ट्रक का फ्रंट पार्ट दिख रहा --